जो की बहुत ही हरे- भरे दिखाई दे रहे है। यहाँ पर दो बड़े-बड़े पेड़-पौधे दिखाई दे रहे है। आसमान भी बिल्कुल साफ दिख रहा है। यहाँ सूरज कि किरण भी अच्छी दिखाई दे रही है। यह तस्वीर देखने मे अच्छी लग रही है।

फोटो मे मुझे एक रोड दिखाई दे रहा है रोड पर मुझे बहुत सारी गाड़ी चलते हुए दिखाई दे रही है मुझे यहा पर रिक्शा दिखाई दे रही है रिक्शा का कलर मुझे येल्लो ग्रीन दिखाई दे रहा है।

यह फोटो मे मुझे क्लासरूम दिखाई दे रही है। क्लासरूम मे मुझे टेबल और बेन्चेस लगे हुए दिखाई दे रही है जिसमे एक व्हाईट बोर्ड और एक ब्लैक बोर्ड दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक विंडो भी है जिसमे जाली लगी हुई है।

यह तस्वीर मे मुझे एक ग्राउंड दिखाई दे रहा है। . ग्राउंड मे कुछ लोग मुझे खेलते हुए दिखाई रहे यह ग्राउंड मे घास बहुत ही हरी और शानदार लग रही है। यह पर कुछ लोग खेलते हुए दिखाई दे रहे।

फोटो मे मुझे बहुत सारी मेट दिखाई दे रही है। जो कि अलग-अलग कलर कि है। इनकी क्वालिटी भी मुझे अलग-अलग लग रही है। यह देखने बहुत ही अच्छी और सुंदर लग रही है।

यहा मुझे एक रेस्टॉरन्ट दिखाई दे रहा है रेस्टॉरन्ट दिखने मे बहुत ही शानदार और खूबसूरत लग रहा है रेस्टॉरन्ट के बाहर कुछ विंडोज़ भी दिखाई दे रही है रेस्टॉरन्ट के बाहर मुझे कुछ प्लांट्स कटिंग दिखाई दे रही है।